इस महाविद्यालय में बहुत से लड़के-लड़कियां पढने को आती --

यह एक बिल्डिंग हैं यह बिल्डिंग बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गयी है बगल में एक और बड़ा बिल्डिंग है जो देखने में काफी अच्छे हैं बिल्डिंग के बगल में एक सड़क है और सड़क बहुत अच्छी --

रोड में आदमी साईकल सवार होके दिखाई देते।

यह एक मंदिर है यह मंदिर बहुत ही विशाल दिखाई देते हैं यह मंदिर में काफी भीड़ है व बहुत ऊंचाई जगह पर हैं।

यह एक ए.टी.एम. है यह ए.टी.एम. आई.डी.बी.आई. बेंक का है यहाँ लोग पैसे निकालने के लिए आते हैं यह ए.टी.एम. बहुत अच्छी जगह पर है ।

यह एक तालाब है। इस तालाब में काफी गहराई पानी है। यह तालाब के बगल में चारों तरफ पेड़ लगे हुए है। यह देखने में बहुत अच्छे लगते है ।